इसमें से एक बंदे ने ब्लू कलर की शर्ट और एक ने पर्पल एक ने चेक और एक ने ब्राउन और एक ने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है।

यह किसी रूम की तस्वीर है जिसमें कि मुझे मार्शल आर्ट बॉडी फिटनेस अकैडमी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह किसी झोपड़ी की तस्वीर है जिसमें मुझे दो लोग नजर आ रहे हैं और ऊपर एक छज्जा नजर आ रहा है।

इसमें मुझे एक लाल अंगोछा और एक नीली टंकी नजर आ रही है।

एक आदमी ने काले रंग का कुर्ता पहना हुआ है।

जो कि इधर उधर घूम रहे है और कुछ बैठे भी हुए हैं।

उपर इसमें मुझे कुछ सामान भी नजर आ रहा है।

इसमें मुझे चार कुर्सी और एक छोटी टेबल भी नजर आ रही है।

इसमें मुझे कुछ बड़े पेड़ भी नजर आ रहे--

पीछे की तरफ कपड़े से बांध हुआ या पर्दे से बंधा हुआ कुछ नजर आ रहा।

कमरे की दीवाल का रंग भी ऑरेंज और सफेद नजर आ रहा है।

इसमें मुझे एक अलमारी और एक खिड़की बनी नजर आ रही है।

कुछ लोग इधर उधर खड़े हुए हैं और एकवी स्टेज पर भी खड़े हुए हैं।

मैं ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और इसमें नीचे प्रगति सदन भी लिखा हुआ है।

मुझे चार पांच मिस्त्री नजर आ रहे हैं जो कि अपना अपना--